यहां पर हर तरह के से सामान मिला करते हैं ग्रोसरी से ले--

यह घोड़ों की जगह दिखाई दे रही है यह घोड़ा का अस्तबल दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत सारे घोड़े हैं।